एक हमे बहुत सारा मटका दिखा -- हमे यहा पर ढलियाए दिख रही है ब्लू कलर की रेड कलर की येल्लो कलर --

हमे यहा पर बहुत सारा पहाड़ दिख रहा है। काला काला पहाड़ दिख रहा है। मिट्ठी दिख रही है। घास दिख रही है।

हमे यहा पर बहुत सारे बिल्डिंगस दिख रही है। हमे यहा पर बहुत सारे--

हमे यहा पर नीला सफ़ेद आसमान दिख रहा है। हमे यहा पर पेड़ पौधे दिख रहे है। रेत दिख रही है।

हमे यहा पर रेड कलर की व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है। खिड़किया दिख रही है। काच के दरवाजे दिख रहे है। हमे यहा पर एक ट्रॉली दिख रही है|